जहां पर बहोत सारे एरोप्लेन खड़े हैं।

जिसने सफेद और काले कलर के कपड़े पहने हैं।

और दो थाली पानी से भरी हुई भी रखी हुई है।

मंदिर के आगे एक मोटरसाइकिल खड़ी है।

जहाँ पर बीच में कारपेट बिछा हुआ है।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

साथी में यहाँ पर बहोत लंबे-लंबे पेड़ है।

साथ ही मे एक टेबल फैन रखा हुआ हैं।

यहाँ पर बहोत सारे एक्स रे किए जाते हैं।

साथी में कुछ ग्रे कलर की सीट भी लगी हुई है।

सभी ने व्हाइट कलर के जूते पहने हुए हैं।

जहां पर बहोत सारे व्यक्ति खड़े हुए हैं।

यहां पर एक लम्बा पाइप रखा हुआ हैं।

यहाँ पर एक व्यक्ति रेलिंग जा रहा है।

सामने लोहे की जाली से यह अंदर की तरफ है।

जहां पर तीन व्यक्ति चल रहे है।

बलून का कलर व्हाइट और नीला है।

कबोर्ड का कलर व्हाइट है और--

जहां पर बहोत सारे टाइल्स की फोटो लगी हुई हैं।

और एक पानी का जग रखा हुआ है।

यह एक चार्जिंग स्लॉट लगा हुआ है।

बकरियों ने सफेद कलर की हैं।

यहां एक गैरेज का फोटो है।

साइट की तरफ एक लोहे का दरवाजा बना हुआ है।